यहाँ एक नदी है नदी बहोत बड़ी है नदी के एक साइड बहोत सारी लाइट जलती हुई दिख रही हैं और मंदिर भी बने हुए हैं और गुलाबी कलर की लाइट जल रही है नदी के ये साइड में।

लालिमा कलर के जो बहोत ही प्यारे लग रहे हैं उसका व्यू पूरा नदी में आ रहा हैं और एक --

हरा और ऑरेंज और सफ़ेद कलर का बलून यहां पे एक फैन लगा हुआ दिख रहा है और ग्रिल के ऊपर बोहत सारी लाइट लगी हुई जो दिख रही। सब लाइट्स चालू है।

मैदान के अंदर काफी सारे बच्चे हैं खेल रहे हैं और एक बोहोत बड़ा सा खम्भा लगा हुआ है जिसमें चारों तरफ की लाइट लगी हुई है और एक साइड में अ मै खेलने के लिए जगह बनी हुई है और बोहोत सारे लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। स्कूल के आजु बाजु बहोत सारे पेड़ --

झंडा लहर रहा है कुछ लोग नीचे खड़े होकर के देख रहे हैं और बहुत सारे वा खंभे जिसमें वायर लटके हुए दिख रह --

बोहोत सारे बेंचेस रखे हुए हैं। परदे लगे हुए हैं लाल कलर के सफ़ेद कलर के परदे लगे। ऊपर ग्रिल पे बोहोत सारी लाइट लगी हुई हैं। एक बैग रखा हुआ है बेंच पे। एक आदमी दिख रहा है।

यहाँ पर एक चर्च है। चर्च के बाहर लोगों की बोहोत सारी भीड़ लगी हुई हैं। अ नीचे हरे कलर का मैट बिछा हुआ है। सामने एक टेंट लगा हुआ है और नीचे ए यहाँ पे एक कैन्डल लगाते हुए बहोत सारे लोग दिख रहे। कैन्डल जल रहे। एक सफ़ेद कलर की लाइट लगी हुई जो जल रही है।